नये नये कपड़े पहने दिखाई दे रहे है एक स्कूटी दिखाई दे रही है स्कूटी पे एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ नीचे जमीन में बहुत सारे नट पड़े दिखाई दे रहें हैं।

और यहाँ पे कुछ लोग कुर्सियों पर सोए दिखाई दे रहे है जिसने गुलाबी कलर की चादर ओढ़े सोए हुए है और बोहत सारी कुर्सियां रखी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक गटर या कुछ गन्दा झील दिखाई दे रही है जहाँ पर बहोत सारे आदमी खड़े दिखाई दे रहे है।

लड़को के हाथों में रेड कलर के लोटे दिखाई दे रहे हैं बाजु में एक नाव दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा --

कुछ खिड़कियां लगी दिखाई दे रही है और ऊपर सजावट लगी दिखाई दे रही है।

व और यहाँ पर डंबल भी रखा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का और ऊपर टिन का सेट छत डला दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक शादी का हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर बोहत सारे लोग इकठ्ठा दिखाई दे रहे है।

लॉन के बाहर दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं एक आदमी फोन कान पे लगाए दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के जूते प --